आप भी देख सकते हैं आसपास के जो पेड़-पौधे हैं जो बहुत ही प्रकृति को संभाले रखती है। आसपास के जो पानी है वो बहुत ही अच्छा है। जय हिन्द दोस्तों।

यह एक बहुत ही बड़ा फैन जैसा लग रहा लगी हुई है वो बहुत ही अच्छे है जो आस-पास के जो यहाँ जो --

और जो नाई है वो बहुत ही सुन्दर बहुत ही हैंडसम मुंडा लग रहा है | यहाँ बहुत ही अच्छा आस पास पे जो आईने हैं काफी अच्छे हैं नीचे भी बहुत ही अच्छा है ।

बिल्डिंगस भी है काफी बड़ा लंबा-चौड़ा।